इस पिक्चर में एक बैंक दिखाई दे रही है।

ये एक शादी हॉल है जो कि काफी बड़ा नजर आ रहा है।

हाल के बाहर एक चौकीदार कुर्सी पर बैठा हुआ है।

ये एक जीडीएस ढाबा है जो कि काफी बड़ा और काफी--

ढाबे के बाहर काफी सारी कुर्सियाँ और कुछ स्टॅबिले भीं लगी हुई हैं।

बाहर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ बाइक और कुछ कार और एक्टिवा --

इस पिक्चर में एक आदमी कपड़ो पर इस्तरी करते हुए दिखाई दे रहा है एक--